दीवार में मिरर भी चिपकाया गया है।

खंभा का कलर एलो और ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है।

और दो औरत दिखाई दे रहे हैं।

वहां बहुत सारे शर्ट हैंगर में टंगा कर नजर आ रहा है साथ में बहुत सारे हैंडबैग भी नजर आ रहा है।

लड़की अपने बच्चे के साथ भी नजर आ रहे हैं।

मी के बगल में वर्णमाला जैसे फूल बिनसर आए--

यहां बहुत सारे कार्स भी दिख रही है।

यहां मुझे लाइट की पोल्स भी दिख रही है।

मुझे इस तस्वीर में एक कमरा नजर आ रहा है ये कमरा एक रेस्टोरेंट है।

बगल में बॉक्सेस भी रखा गया है।

बहुत बहुत सारे व्हीकल्स भी नजर आ रहे हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक कमरा नजर आ रहा है।

मशीन भी नजर आ रहा है।